ये एक मॉल का पिक्चर है जहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे है बहुत सारे काउंटर है।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

ये एक कार है जिसका कलर ग्रे कलर की है एक साइड बिल्डिंग्स वगेरा है ये पार्किंग मे पार्क की यी है इसके --

ये गणेश जी की मूर्ति है जिसमे पीले कलर का हार चढ़ा हुआ है गणपतीजी की धोती लाल कलर की है उनको दिया प दीपक वगेरा जल रहा है पीछे बहुत सुंदर का सा कार्पेट वगैरा रखा गया है।

और ये ब्लू कलर से ईत्ते बडे अक्षरो मे काजल लिखा है अँड रेड कलर के उसमे फाय --

यह पर ये चार टी-शर्ट्स रखी गयी है जिसके अंदर ग्रीन अँड रेड कलर की लाइनिंग्स है इस ट-शर्ट्स मे एक व्हाइट कलर की ट-शर्ट्स है जिसके अंदर ग्रीन अँड रेड कलर के लाइनिंग्स वैगेरा है और ये बहुत ही प्यारे टी-शर्ट्स लग रही है।

ये एक फूटवेर की शॉप है यहाँ पर बहुत ही अच्छे-अच्छे मेन्सवेर फूटवेर्स ढेर लगे हुए है।